इस तस्वीर मे हमें एक सुबह का दृश्य दिखाई पड़ रहा है जिसमें की एक इलेक्ट्रिक पावर हाउस दिख रहा है।

जोकि हरी और लाल रंग में रंगा हुआ घर के चारों तरफ जमीन खाली पड़ी है कुछ पेड़ लगे हैं।

और एक अस्पताल दिखाई दे रहा है जिसके मुख्य द्वार पर राज नर्सिंग होम लिखा हुआ है।

एक खाली समीन नजर आ रही है जिसके किनारे एक तरफ एक छोटा सा घर बना है और जमीन की चारो तरफ बड़े-बड़े हरे भरे वृक्ष दिखाई पड़ रहें हैं।

जिस पर कि कुछ गाड़ियां खड़ी है और किनारे-किनारे कुछ फूल के पौधे लगे हैं।